चश्मा पेहना हैं उसके बगल में एक आदमी हैं जो ब्लू और वाइट चेक्स शर्ट पेहना हैं और दोनो एक सेल्फी ले रहा हे ये दोनो एक दुकान में बैठे हैं।

नीचे वाले शेल्फ में रेड वाइट और ब्लू और ब्लैक कलर की टी शर्ट टंगी हुई हैं।

यह एक बार्बर शॉप की दुकान हैं जहाँ एक लड़का बाल कटवा रहा हैं एक लड़का फोटो ले रहा हैं।

यह मूर्ति ने लाल कपड़े पहने हुए हैं बगल में एक आदमी वाइट कुर्सी में बैठ कर जो ब्लू रंग की शर्ट पह --

रोड के बगल में भी फुट पाथ में लोग चल रहे हैं और कई सारी दुकानें भी हैं।

कुछ बच्चियों ने लाल काला और येलो कलर का ड्रेस पेहना हैं कुछ बच्ची खड़ी हैंऔर कुछ चेयर में बैठी हुई हैं।

और ये आदमी एक लड़की को गोल्डेन कलर का अवार्ड दे रहा हैं उस लड़की के बगल में एक वाइट शर्ट पहन कर एक आदमी खड़ा --

इस पिक्चर में एक औरत हैं जो बाइक के पीछे बैठी है।

एक आदमी ने गमछे से अपना सर में पगड़ी पहना हैं और एक आदमी ने अपने हाथ पर फ़ोन पकड़ा हैं।